यहां बॉक्स बने हैं कुछ उसमें तरह-तरह की कुछ चीजे रखी हुई हैं।

ये एक पानी का फुव्वारा है यहाँ पानी व्हाइट कलर मे दिख रहा है आस-पास पेड़-पौधे भी है।